एक बोर्ड भी लगे हुए हैं यहाँ पर सारी चीज लखी हुई है ये जगह भी बहुत खूबसूरत ही दिख रहा है।